बगल से एक खम्भा अअअ एक और में स्टील का रेलिंग ग रेलिंग लगी हुई है बगल से कुछ लोग दो --

इंग्लिश में लिखा हुआ है बड़े-बड़े पेड़ लगा हुआ है। नीचे छोटे-छोटे पत्थर है। उस पे छोटे -छोटे पौधे है। बोहोत कचरा --

वहाँ से एक बड़ा सा टॉवर है। टॉवर के बोहोत बड़ा उजाला आ रहा है। कहीं से एक नीला --

एक औरत उस दुल्हन के मुँह पर कुछ कर रही है। कुछ लोग फोटो क्लिक कर रहे है। सब --

सामने एक बड़ा सा पहाड़ पहाड़ो में एक सूरज उग रहा है और सामने से और बड़े-बड़े पौधे लगे हुए है ऊपर खुला आसमान है |